पहाड़ का नजारा बहुत खूबसूरत है और व्यक्ति पीले रंग का शर्ट पहना है।

यह एक शॉप है जिसमें लाइट लगा हुआ है और बगल में केवदी जैसा लग रहा है।

व्हाइट कलर का पेंट किया गया है बगल में एक अशोक कांच का पौधा है।

और इसमें एक ठो लोहे की रॉड लगा हुआ है।

पहाड़ है और पहाड़ के बगल में कई सारे कई रकम के पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

पहाड़ में अनगिनत पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

शादी के लिए डेकोरेशन किया जाता है शादी में कई सारे लोग दूर दूर से आके यहां पे शादी करते हैं।

इसके बगल में पेड़ पौधा है और यहाँ पे एदम सजावट की गयी है आगे गेट बना हुआ है।

यहां पे एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है। बिल्डिंग के बगल में पीपल का पेड़ लगा हुआ है।

यह हाथ में डंडा झाड़ू और नीचे व्यक्ति बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में प्लेट वह व्यक्ति नाश्ता कर रहे हैं।

एक ठो व्यक्ति बैठे हुवे है बगल में और इसमें फोन पे का स्कैनर लगा हुआ है और टेबल लगे हुवे हैं।

इत्र कुटी पहाड़ है इसमें सीढ़ी बनी हुई है।

एक टेबल है। टेबल के उपर में एक वाइट रंग का प्लेट है।

प्लेट में हरे रंग की केले का पत्ती हैं जिसमें एक कटोरी में सूप रखा हुआ हैं सूप के अन्दर एक चम्मच हैं।

बिल्डिंग के बगल में दो ठो पेड़ है और दो ठो बाइक पर दो सवार व्यक्ति जा रहे हैं।

ये एक सैलून है सैलून में एक ठो बच्चा इधर चेयर पर बैठा हुआ दो ठो बच्चा और पीछे में चार व्यक्ति और हैं।

नीचे में ब्लू कलर का जीन्स पहना है बाकी सारे व्यक्ति अंडर वियर पर नहा रहे हैं।

और इसमे सीढ़ी जैसा बनाया गया है और ऊपर में रेलिंग दिया हुआ है लोहे का जिसमे क्लर है।

ये टेबल पर एक सुनहरे रंग का एक ठो प्लेट है जिसमें प्लेट के अन्दर एक ठो चम्मच हैं।

इसमें से एक ठो व्हाइट कलर का ट्रक लगा हुआ हैं। ट्रक के बगल में दो ठो ट्रक लगे हुए--

एक ठो व्यक्ति है जो किवाड़ी के सामने खड़ा है जिसका मुंह हुआ है और इसका अम ब्लैक कलर का बाल है।

येलो ब्लू और ग्रीन कलर के ऊंची लगे हुए हैं और दो व्यक्ति जो है सो पानी के अंदर है।

इसमें शेटर लगा हुआ है और इसमें फूल की आकृति से बना हुआ है।